पर शादी समारोह का प्रोग्राम हो रहा है इस पैलेस में शादियां कराईं जाती हैं।

पर खड़े हुए हैं। पैलेस पर निगरानी रखवाली कर रहे हैं।

लोग पूजा कर रहे हैं। ये पूजा अपनी आस्था भजन के लिए है। एता होगो जैसे ये होगो।